पास में हमें एक चेयर भी दिख पड़ी हुई नज़र आ रही है।

कमरा भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।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

पास में हमें एक लड़की भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

गार्डन में बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पास में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें किसी झील का नजर आ रहा है।

झील में हमें कुछ पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें कुछ गमले भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें बहुत सारा स्टेशनरी का समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पास में हमें कुछ बैग भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य हमें किसी स्टेशनरी की शॉप का नज़र आ रहा है।

ऊपर हमें कुछ नमकीन के पैकेट्स भी रखे हुए नजर आ रहें हैं।

यहां पर हमें बहोत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

पास में हमें एक टीचर भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

यहां पर हमें बहुत सारी कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर हमें शेड बना हुआ नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमें किसी शॉप का नजर आ रहा है।

पास में हमें एक टेबल भी रखा हुआ नजर आ रहा है।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

बाहर हमें एक गार्डन भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।